और प्लांट के साइड में कोने में आप देख रहे होंगे एक वाल भी अच्छी है वाइट कलर --

और जो बैकग्राउंड में प्लांट हैं ग्रीन टाइप के बस उससे थोड़ा-सा दूर देखे तो वो सब प्लांट हैं ब्लैक टाइप के।

सीढी़ भी लाने का --

और ये कपड़ा दुकान है बच्चें लोग के --

दोनों ही पैर में चोट लगा हुआ लग रहा हैं। दिख रहा होगा --

और मस्त टहल रहें हैं और साइड-साइड में देखिये बहुत सारा बिल्डिंग छोटा-छोटा बना हुआ --

हैं ईट हैं।

और ये बुके सिस्टम और भी अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन तो और भी अच्छे हैं।

और अच्छा है वेदर तो और भी अच्छा हैं लग रहा वाइट --

मैरेज मेरा देखिएगा। बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया हो--

बहोत अच्छा ग्राउंड है। साइड -साइड में बाउंड्री बनी हुई है।

बहुत सारे बलून लगाए हुए हैं।